ए.टी.एम. मशीन है और स्टेट बैंक ए.डी. ए.टी.एम. स्टेट बैंक ए.टी.एम. है।

और बहुत ही अच्छा अच्छा स्कूल है और बहुत ही --

बहोत ही गाड़ी साइकिल है हेमलेट दिखाई दे रहा है और किसी का पोस्टर भी--